यहां पे बहुत सारे लोग टहलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

एक कफों की दुकान है यहां पर हर तरीके की कफे मिलती हैं।

कुछ रेड हैं कुछ सफेद हैं कुछ काली हैं कुछ पीली हैं और कुछ सफेद बिल्कुल एकदम व्हाइट हैं।

ऊपर झालर लगी हुई है और यहां के साइड में कुर्सियां वगैरह पड़ी हुई है कुछ मेजे पड़ी हुई है।

यहां पे एक लड़की दवाई लेते हुए दिखाई भी पड़ रही है और एक औरत खड़ी हुई है खड़ी हैं।

और यहां पे एक डामर डा फर्श नीचे पड़ी हुई है जो डाबरो इट डामर ईट की बिछी हुई है।

ये एक पार्क है यहां पे ये पार्क में बहुत सारे पेड़ वगैरा लगे हुए हैं।

यहां पे चार पांच लोग जंगल के अंदर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

एक संस्थान है यहां पे हर काम होता है ये सरकारी काम यहां पे सारा होता है।

पे गाड़ी वगैरह रिपेयरिंग होती है यहां पे एक आदमी अपनी गाड़ी रिपेयरिंग करवा रहा है।

और यहां पे दो तीन चेयर पड़ी हुई हैं और यहां पे बहुत सारे खिलौने वगैरह भी रखे हुए हैं।

इसके पे कारियो अ इस एक अ मेज पड़ी हुई है उसी पे सारे फल लटके हुए हैं और--

यहां पे दो तीन लोग भी खड़े हुए हैं एक लड़की खड़ी हुई है।

कुछ लोग बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं यहां पे एक मोटरसाइकिल पूरी खुली हुई खड़ी दिखाई पड़ रही है औ यहां --